और इस चर्च के अंदर बहुत सारे लोग है और चर्च येलो व्हाइट कलर का है उसके ऊपर ये त्रिकोण आकार के बना होगा ।

ये पहाड़ के ऊपर ग्रीन कलर का एक बहोत से पौधे है और बहोत घने हैं।

जी बनवाए हुआ है ये एक बड़ा-सा दिवार है उधर से एक लोग और एक औरत आ --

यह एक घर है इसके बगल में बगीचे की तरह लगा हुआ है इसमे एक बच्चा खड़ा हुआ है घर के बाहर।

यह एक महजिद है महाजिद के आगे एक मुर्गी है |

यहाँ एक केक का दुकान है और केक के दुकान में एक बड़ा सा --

और इसके पीछे बहुत बड़े पेड़ है और ये एकदम सड़क के किनारे पर लगे हुए हैं।

और ये अब इसमे पाँच-छह काउन्टर है और ये बैंक काफी बड़ा सा है।

खाली जगह है उसके ऊपर एक एक तीन झंडे लगे हैं उनके बगल मे एक पीपल का एक। बहुत बड़ा पेड़ है।

के लिए सबके लिए साइकिल लगा हुआ है ये काफी बड़ा सा साइकिल का दुकान है इसमें छोटे-छोटे बहोत अलग-अलग किस्म के साइकिल है यहां पे।